इस फोटो में एक व्यक्ति सेल्फी लेता हुआ दिखाई पड़ रहा हैं।

यहां पे हीरो और ऑटो बाइक लिखा हुआ है।

जिसके ऊपर टीन छज्जे से बने हुए शेड है।

मैदान में मिट्टी और हरे घास भी दिख रहे हैं।

एक पर्दा लगा हुआ है जो लाल रंग का है।

टेबल डेस्क बिल्कुल खाली हैं आगे की तरफ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं।

इस फोटो में एक वाटर पार्क का दृश्य है वाटर पार्क में बीच में एक पोंड बना हुआ है।

एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये काफी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है।

फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है जो सीमेंटेड है।

नीचे काफी मछलियां है एक व्यक्ति प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा हुआ है आस-पास काफी लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

इस फोटो में एक ऑफिस का दृश्य है बाईं ओर एक काउंटर बना हुआ है जो बैंक का है।

मास्क लगा रखा है झोला भी है।

सामने एक रैक रैक पे भी बच्चों के खेलने वाली चीज रखी गई है।

इस कमरे में सर्विस सेंटर है वहां सामने लोहे के बने हुए कुछ वर्डड्रॉप्स हैं जिसपे कुछ मशीनें रखी गई हैं।

और रोड के बीचों बीच एक बाउंड्री भी बनी हुई है जो लोहे की है।

काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं मौसम में काफी बादल दिखाई पड़ रहे हैं।

इस फोटो में एक विवाह स्थल का दृश्य है।

आइने तरफ एक व्यक्ति खिड़की तरफ मुंह करके खड़ा है।

आस पास हरे घास का मैदान भी दिख रहा है।

एक तरफ जैकेट शॉप ब्लेजर दिखाई पड़ रहे हैं हाफ पेंट और मोटर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टेज दिख रहा है स्टेज पे काफी युतियां नृत्य की मुद्रा में है।

के पीछे एक बाघ विचरन करता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे जो बाउंड्री है वहां एक पाइपलाइन भी दिखाई पड़ रही है।

इस फोटो में एयरपोर्ट टर्मिनल है जिसमें सामने एक रास्ता बना हुआ हैं।

पिछे खिड़की पे पारदे लगे हुए हैं एक तरफ लाल रंग का पर्दा है।

हरे हरे घास भी दिखाई दे रही है कुछ व्यक्ति टहलते हुए भी दिखाई दे रहे--

और एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो कुर्ता और लुंगी पहने है।

उसके ऊपर छज्जे टीन से बने हुए हैं शीट से बने हुए हैं।